--और यहां पे पेड़ लगे हैं और यहां पे पौधे भी लगे हैं।

और आस पास बोहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं | लगे हुए है और गाये खूटे से बंधी हुए हैं और बादल हो रहे है।